इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक बहोत सारे ट्रे के अंदर काले रंग के अंगूर रखे गए हैं।

इस तस्वीर मे आप देख सकते है की एक मोबाईल की दुकान को दिखाया गया है।

तथा जलाशय में कुछ बूंदा-बांदी देखी जा सकती है यानी की बारिश जैसा माहौल बना है।

अलग-अलग प्रकार के समान उपलब्द हैं तथा कुछ समान टांगा हुआ है।